और में जो तार है वो ब्लू कलर का है आदमी सावला कलर का है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं ये एक हेलिकॉप्टर है ये उस का कलर वाइट कलर का है और इसमें लाइट भी जल रही है।

पूजा करते हुए दिखाई दे रहे है जो कि कपड़े इनके व्हाइट और रेड मे है।

और यहाँ एक पेंसिल भी है शकालका बूम --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ये एक पहाड़ है यहाँ पे एक अंकल व्हाइट कलर की --

जीने भी है और यहाँ पर ये नाव भी है छोटी- छोटी --

खा है और इस में घर संसार महा सेल लिखा हुआ है।

और यहाँं पर एस. बी. आई से सफेद से लिखा है यहाँं पर वाइट कलर की शटर भी है।

घासें दिखाई दे रही है और बहुत सारे ग्रीन कलर के पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

जैसा की मै देख पा रही हूँ यहाँ पर कैंसर केयर ए प्रसूति--

यहाँ पर स्टेज भी है और दो पोस्टर भी लगे हुए हैं व्हाइट और ग्रीन कलर के --

और एक लोग खड़ा हुआ है तीन पटरियां --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर हाईवे दिखाई दे रहा है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं ये एक मंदिर है यहाँ पर एक--

जैसा कि मैं देख पा रही यहाँ पर मुझे बैट बॉल दिखाई दे रहे है जो कि एक बॉक्स में लगे हुए है जिसका कलर काले कलर का है।

बैट में जो नोट लिखा है वो रेड कलर ब्लैक कलर से है।

बैंक भी है यहाँ पे यूनाइटेड बैंक --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर स्नैक बार लिखा हुआ है जोकि व्हाइट कलर से है और --

ब्लू कलर की अलमारी भी है एक अंकल दिखाई दे रहे हैं जो की एक जैकेट पहने हुए हैं।

और एक अंकल फोन में बात करते हुए दिख रहे हैं जो की वाइट कलर की टोपी पहने हुए हैं और ऊपर लाइट भी--

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहाँ पर कुर्सिया व्हाइट कलर और पिंक कलर में ह--

और यहाँ पर लोग भी हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मैज भी रखी हुई है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह एक ट्रक है जिसमें लिखा है भारत पेट्रोलियम जिसका कलर ब्लू कलर का हैं।

यहाँ पर एक दो ऑटो भी है पिली कलर और उसमें--